मुझे कुछ लाइटें लाइट लगी हुई नजर आ रही हैं।

पीछे कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे ही बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

मुझे कुछ गाड़ियां भी दिख रहीं हैं।

और सामने की तरफ कुछ मिरर भी लगाए गए हैं।

सामने ही मुझे बहोत सारे लाइटों के खंभे भी दिखाई दे रहे हैं।

जिम के अंदर बहोत सारी मशीने पड़ी हैं।

मुझे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं द माउंटेन डियर वैली का एक बोर्ड लगा हुआ है।

के नाम से बोर्ड लगा गया है मुझे कुछ कूलर बड़ा दिखाई दे रहा है।

साथ में ही यहां पर कुछ लोग भी--

स्कूटर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक गाड़ी नजर आ रही है।

सामने ही मुझे सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

मुझे एक कम्युनिकेशन सेंटर का बोर्ड नजर आ रहा है।